जो बेहद ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है पर्वत की और एक पहाड़ भी है जो बेहत ही अच्छी है और आगे तरफ पेड़-पोधे भी देखने को मिल रहे है।

कोई एक यहाँ पे मूर्ति देखनें को मिल रहा है जो एक बेल का मूर्ति बनाए गए है जो बेहद ही अच्छा नजारा देखनें को मिल रहा है बेल का और बेहद ही डिजाईन के बनाई गए है।